यह पे एक बड़ा सा घर जैसा नजर आ रहा है महल के जिसमे बहुत सारी बाल्कनिया बनी हुई है जिनमे खिड़किये है।